और यहां पे एक पौधा भी खड़ा हुआ यहां पे सब कुछ बिलकुल अच्छा लग रहा है देखने मेरे को एवन फिटनेस क्लब का यहां पे शीशे का फोटो है यहां पे एक देश का झंडा तिरंगा भी लगा हुआ है।

इस दुकान के अंदर मेरे को बहोत सारे यहां पे एक बहोत मोटरसाइकिल बुलेट पर दिखाई दे रही जहां पर बुलेट की है के_टी_एम यहां पर उनके--

हैंड वॉश मिल जाएगी मोबाइल मिल जाएंगे यहां पे बहोत अच्छे अच्छे काफी महंगी महंगी यहां पे घड़ियां रखी हुई है और ये बहोत ही शानदार सुंदर बहोत अच्छे अच्छे हाथ में पहनने की बहोत अच्छी घड़ी है।

अह यहां पे मुझे एक बुलेट गाड़ी दिखाई दे रही जो कि यहां पे एक अह मोटरसाइकिल खड़ी बुलेट खड़ी है यहां पे लड़का सर्विस कर रहा है यहां पे।

एक बहोत ही शानदार किसी पारक का फोटो यहां मे मुझको दिखाई दे रहा है यहां मे पार्क में बहोत बड़ा पेड़ लगा हुआ है और यहां पे पीछे भी बहोत सुंदर शानदार ये पार्क का फोटो मुझे लगता है हमारे यहां रोतक का एक फोटो है।

और ये मुझको लग रहा है ये शायद ये मोर ही हो सकता है जो कि हमारे देश का नेशनल बर्ड्स है और बहुत शानदार मुझको फोटो दिखाई यहां पे बहुत अच्छा पक्ष यहां पे इसके ऊपर बैठा--

यहां पे सभी लड़के और आजकल के टाइम में लड़के और लड़की भी बीयर्स पीने आते हैं बियर बार में आते और आराम से अपना मजा लेते हैं अल्कोहल लेते हैं चिकन खाते हैं फास्ट फूड भी खाते हैं शराब वाइन सब कुछ मजा लेते हैं।

यहां पे लाइट भी लगी हुई है बहुत अच्छी यहां पे साफ सफाई हाइजन बहुत अच्छी है चेयर भी लगी हुई यहां पे टेबल्स भी बिछी हुई है।

यह शायद फर्नीचर वाले का ही फोटो है यहां पे यहां पे टेबल्स रखी हुई है बहुत शानदार फोटो यहां पर ये दिखाई दे रहा है।

आर_के मेगा के नाम से यहां पे कुछ सामान बिकता होगा इस दुकान के अंदर और बड़ा बड़ा में यहां पे एक हेयर सैलून का मुझको फोटो दिखाई दे रहा है।

शानदार बहुत ही मुझे यहां पे लाइब्रेरी का फोटो दिखाई दे रहा है जहां पे एक किताब रखी हुई है जिसपे जीव विज्ञान लिखा हुआ है।

और यहां पे ये हाथ से भी बना लिए जाते हैं जो हाथ से बनाएंगे तो फ्री में रहेंगे अगर हम मार्केट से लेकर आएंगे तो वही कपड़ा हमको पैसे में मिलेगा जो कि मैं--

ये एक मुझे बहुत अच्छा शानदार फोटो दिखाई दे रहा है जो कि जिम का फोटो है यहां पे जिम में बहुत सारी लड़कियां यहां पे जिम कर रही यहां पे बहुत सारी मशीनें हैं यहां पे।